दोस्तों recursive function पर spoken tutorial में आपका स्वागत है
इस tutorial में कुछ उदाहरणों की सहायता से
हम सीखेंगे
recursive फंक्शन क्या है
इस tutorial का अनुसरण करने के लिए आपको bash में shell scripting का ज्ञान होना चाहिए
यदि नहीं तो कृपया संबंधित tutorials के लिए दिखाई गई website पर जाएँ
इस tutorial के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ
ऊबंटु लिनक्स 1204 operating system
और gnu bash version 42
कृपया ध्यान दें अभ्यास के लिए gnu bash version 4 या उससे नए की सलाह दी जाती है
देखते हैं कि recursive function क्या है
recursive function एक ऐसा है जो खुद के द्वारा calls होता है
recursion जटिल algorithms को सरल बनाने के लिए एक उपयोगी technique है
मैं factorial sh named file खोलती हूँ
मैंने इस file में कुछ code टाइप किया है
यह shebang line है
factorial function का name है
इसके अंदर हम message inside factorial function print करते हैं
यह statement यूजर input को रीढ करता है और variable n में value संचित करता है
यहाँ हमारे पास ifelse condition है
if condition checks करता है कि क्या n की value 0 के बराबर है
यदि true है तो यह factorial value of n is 1 message प्रदर्शित करेगा
यहाँ if statement का else भाग है
यह factorial function को calls करता है
और fi ifelse statement का and है
file factorial sh को रन करते हैं
अपने keyboard पर क्रमानुसार ctrl + alt + t कीज keys का उपयोग करके terminal खोलें
type करें: chmod space plus x space factorial dot sh
enter दबाएँ
type करेंः dot slash factorial sh
enter दबाएँ
हम देखते हैंः enter the number
मैं 0 प्रविष्ट करुँगी
output प्रदर्शित होता हैः
factorial value of 0 is 1
अब uparrow की key दबाएँ पिछली command को recall करें
enter दबाएँ
इस समय मैं 5 प्रविष्ट करुँगी
अब output प्रदर्शित होगाः
inside factorial function
factorial function में कुछ और logic जोडते हैं
हम संख्याओं के factorial की गणना करेंगे
अपने code पर वापस आयें
अब factorial function के अंदर code block के साथ echo statement बदलें
save पर click करें
temp variable है और यूजर द्वारा प्रविष्ट value को संचित करता है
if condition checks करता है कि क्या variable value 1 के बराबर है
यदि true है तो यह 1 print करेगा
यह if statement का else भाग है
यह temp variable value से एक कम कर देता है
और परिणाम को variable f में संचित करता है
variable f factorial function के output को संचित करता है
यह recursive कॉल है
variable f और temp की value का गुणा होता है और f में संचित होता है
फिर हम f की value print करते हैं
ifelse statement और function समाप्त होता है
अब अपनी slides पर वापस आयें
अपने program के flow को समझते हैं
n की value यूजर से the गई है जो n है
यदि prints value 0 के बराबर है तो यह message prints करता है
अन्यथा यह function factorial के लिए चला जाता है
यहाँ यदि value एक के बराबर है तो यह एक के रूप में value prints करता है
यदि नहीं तो यह recursive कॉल बनाता है जब तक कि value एक के बराबर नहीं होती है
फिर सभी values का गुणा होता है और प्रदर्शित होती हैं
अब अपने terminal पर वापस आयें
uparrow की key दबाएँ
पिछली command /factorial sh को recall करें
enter दबाएँ
अब मैं input value के रूप में 5 प्रविष्ट करुँगी
हम संख्या 5 का factorial प्राप्त करते हैं
जो है 120
हम terminal पर program के flow को देख सकते हैं program के flow का विश्लेषण करें और पता लगाएँ
अपनी slides पर वापस आयें
संक्षेप में इस tutorial में हमने सीखा
कुछ उदाहरणों की सहायता से
recursive फंक्शन
नियतकार्य के रूप में एक program लिखें जहाँ recursive function n संख्याओं के योग की गणना करता है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
spoken tutorial project team spoken tutorial का उपयोग करके कार्यशालाएँ चलाती है
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं
अधिक जानकारी के लिए contact @spoken hyphen tutorial dot org पर लिखें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
यह स्क्रिप्ट प्रभाकर द्वारा अनुवादित है आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य अब आपसे विदा लेती हूँ
हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद